यह देखने मे लग रहा है यह रात का सीन है। यहाँ पर जीने बनी हुई है। रेलिंग बनी हुई है इसका कलर थोड़ासा पीला हल्का सा हीरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारी खिड़किया लगी हुई है।

यह एक जलाशय दिखाई दे रहा है यह पानी नीला कलर का दिखाई दे रहा है सामने आसमान दिखाई दे रहा है जो नीला है। यहाँ पर कुछ टापू दिखाई दे रहे है।

गए हुए है और इसके बाजुमे एक नीला कलर का टप दिखाई दे रहा है उसके सामने दिखाई दे रहा है यहा पर एक स्कूटी वाले अंकल दिखाई दे रहे है यहा पर बहोत सारी गाड़िया खड़ी हुई पेड़ पौधे दिखाई दे रही है हरे--

यह सामने एक जलाषय दिखाई दे रहा है यहा पर बहुत सारे पेड़ पौदे वृक्ष दिखाई दे रहे है जो ग्रीन कलर के है इस पार किनारे दिखाई दे रहे है एक टंकी लगी हुई है इस्टील की --

एक बाजू मे मखान दिखाई दे रहा है जो ऑरेंज कलर और रेड कलर का है। सामने आसमान दिखाई दे रहा है। जो नीले कलर का है। यहा पे वृक्ष दिखाई दे रहे ग्रीन--

ये सामने रैस्टौरेंट दिखाई दे रही हैं इसमे बहुत सारी ची टेबल लगी हुई हैं। टेबल के आजूबाजू दो--